यहाँ पे कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही है बहुत सारे पत्थर भी दिखाई दे पे_पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है|

यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है दीवाल दिखाई दे रही है जिसका कलर है येलो और ग्रीन है और पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रहे है और एक खंभा भी दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान भी दिखाई --